पीछे लैटिंग लगाई गई है सामने की ओर--

मुझे इस फोटो में सामने कि ओर एस टी एम बैंक ए टी एम लिखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

मुझे इस फोटो में सामने की ओर ऑफिस है। हरे- भरे पेड़ पोधै लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने मुझे खंडर सा गोडाउन दिखाई दे रहा है इस खंडर में--

दिखाई दे रही है। नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा है। बादल अगल बगल दिखाई दे रहा है आजु बाजु--

हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे --

कई सारी इधर छपाई कि गई दिवाली मैं छपाई कि गई दिखाई दे रही हैं।

इधर टी_वी लगाई गई सामने की तरफ कार आती हुई दिखाई दे रही।

प्रेरिज ब्यूटी पब ब्यूटी पार्लर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दीवाल में व्हाइट कलर पोती गई सामने दिख पुरा--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर एक मोबाइल की शॉप खुली हुई दिखाई दे रही--

खंभे के ऊपर लाइटिंग जलती हुई दिखाई दे रही सामने--

तेल देखोग दिखाई दे रहा है दिन का समय दिखाई दे सामने की दुकान है वो खुली हुई दिखाई दे रही--

बैठे हुए दिखाई दे रहे कई सारे इंसान खडे हुए दिखाई दे रहे --

बने हुए दिखाई दे रहे मुझे खड़े हुए दिखाई दे रहे--

इतनी सारी सीढ़ियां बनी दिखाई दे रही है आ दिन का समय दिखाई दे रहा है हरी भरी घास फूल लगाई गई है सामने खाली मैदान--

भरी भरी घास फूस लगी हुई दिखाई दे रही है सामने की ओर--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर नीला आसमान दिखाई दे बादल आदल बनी हुई दिखाई--

मंदिर लाइटिंग एटिंग लगाई गई है झाला वाला--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर एक घर बना हुआ दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का करके है।

जलती हुई दिखाई दे रही है अन्दर की ओर वाइट कलर की लाइटिंग लगाई गई हैं सामने की तरफ--

तस्वीर दिखाई दे रही है दिन का रात दिन का खाना खाई है।

एक पंखा किधर पंखे ओंखे के लगे दिखाई दे रहे किधर भी बैठकर के लाइटिंग लगाई गयी नीचे ओ टाल्से दिखाई दे रही मुझे।

एक साइकिल खड़ी दिखाई दे रही है स्कूटी के सामने ही--

बहुत सारी लाइटिंग लगाई गई है दीवालें व्हाइट कलर से पुती हुई दिखाई दे रही सामने की तरफ

एक साथ गड्ढे में खारा पानी दिखाई दे रहा है जिसमें छपाई की गई दिखाई दे रही दिखाई दे रहा है।

जलती हुए दिखाई दे रही है सामने की--

शाम का समय दिखाई दे रहा है हमलोग को इधर घर जैसा बना दिखाई दे रही है व व्हाइट कलर आजू-बाजू कई सारे इंसान --

बनी हुई दिखाई देती है। सामने को अपने लिए--

उधर बॉक्स भी लगा दिख र पीछे की साइड।

बादल वादल बने हुए दिखाई दे रहे हैं सामने की ओर--

हुई दिखाई दे रहे है। बनाई गई पत्थर--

मुझे इस फोटो में सामने काफी सा हरे भरे पेड़ पौधे--